फिश खरीद रहे है। छोटी-बड़ी सब तरह की फिश हैं यहाँ पे।

सवारियों को सवार कर करके मंजिल तक पहुंचाते हैं।

वाउ यहां मेल लगा है बच्चों के लिए। बोहोत सुन्दर मेला --

ये घर है जो बोहोत सुन्दर सजा हुआ है। ये यहां पे ल पार्टी हो रही है।